यह एक मदिर दिख रहा है जिसे ऊपर घूमट बनी हुई है और बहुत साडी सीडिया दिख रही है जैसे दोनों साइड --

एक बहुत बिल्डिग दिखाई दे रही है जिसको येलो कलर से पैंट किय गया है एक बहुत बड़ा खभा भी दिखाई दे रहा है।

एक कारखाना बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और बहुत सारी सीमेन्ट भी रखी हुई है।

एक बहुत बड़ी बिल्डिग दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारे ग्लास लगे हुए है और एक मैदान भी दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी घास लगी हुयी है।